मंजिल का बना हुआ है कान्हा रेस्टोरेंट है यहां पर ये बहोत ही अच्छा यहां पे स्वाद मिलता है।

वहां पे रिक्शा वगैरा भी है यहां पे मेट्रो स्टेशन भी है बहोत सारी गाड़ी वगैरा जा रही है और यहां पे बहोत ज्यादा ट्रैफिक भी हो रखा है।

कॉलेज दो मंजिल का है ये बहोत ही अच्छा इंजीनियर --